यहाँ पर तालब मदा दिखाई दे रहा है यहाँ पर तलाब है पुलने दिखाई दे रहा है रोड खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पर मछरिया धरी है यहां पर केकरे धरे है यहां पर डब्बे रखे है यहां पर व्यक्ति आदमी अम बेच रहे है।

यहां पर लेने वाले खड़े हैं यहां पर डब्बे रखे हैं।